यहाँ एक चित्र है इसमें दिखाइ दे रहा है की--

और उसमें तीन चार जिम की मशीने भी रखी--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

कह रहा है कि एक डेंटिस्ट का क्लीनिक है।

इसमें दिखाई दे रहा है कि यह एक--

यह एक चित्र है इसमें दिखाई दे रहा हैं कि कई सारे लोग बस स्टेशन --

इसमें दिखाई दे रहा है कि एक अस्पताल का चित्र है इसमें एक स्ट्रेचर भी है।

इसमें दिखाई दे रहा है कि एक पत्तागोभी की खेती करी गई है।

और कई सारे कैमरा भी रखे हुए हैं और दीवार का वॉलपेपर चेस गेम का है।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

उसे देख रहे हैं और उस झरने में से बहुत ज्यादा धुआ निकल रहा है।